फुटपाथ पे कोई एक आदमी है और रोड पर--

और यहां पर बेंचेस लगे हुए हैं टेबल भी है.

और बहुत बड़ा सा हॉल है बहुत सारे लोग हैं यहां पर कुछ बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं।

और टेबल चेयर ये सब लगी हुए है यहां पर लाइटिंग वगैरह भी लगा हुआ है.

ये तो एक शॉप है जनरल स्टोर है.

और यहां पर अंधेरा अंधेरा सा है.

कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ खड़े हैं.

और बैग भी लटके हुए हैं यहां पर--

टी_वी मोबाइल यह सब की सेलिंग कर रहे हैं.

यहां पर एक आदमी भी है.

और बैकग्राउंड में लाइटिंग है.

और रास्ते बने हुए हैं साइड साइड में ग्रीनरी है.

और ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे लगे हुए हैं लाइटिंग भी--

और यहां पर तीन तीन लेडीज --

स्टेज पर काफी लाइटिंग वगैरह भी है.

और पर्पल और ऑरेंज कलर के हैं ब्लू ब्लू कलर का चादर बिछा हुआ है और एक कंकाल जैसा सो रहा है यहां पर।

और यह लगता है कोई शॉप वगैरह यहां पर खुलने वाली है.

ये कोई नदी के किनारे खड़े हुए हैं और--

संडे का दिन है उन्होंने जैकेट पहने हुए हैं और सर पे टोपी भी लगाई हुई है.

ये एग की अ एग बिक रहा है यहां पर बहुत सारे.

यहां पर दो बच्चे खड़े हुए हैं और ये कुछ देख रहे हैं.

कुछ ऑर्डर करे हैं उन्होंने खाने पीने के लिए --

और लोग यहाँ पर अ सामान लेना लेने आए हुए हैं।

ये तो कोई अ स साइड है जिसमें अ रोड दिख रही है।

और अ दूसरे साइड भी रोड पर कार जा री है।

ये एक धाबा है जिसका नाम है --

ये कोई अ रुह रूम की फोटो है।

और पीछे साइड में सामान रखा हुआ है पंखा लगा हुआ है।

ये टेबल रखा हुआ है और ये किसी--

ये और दो चेयर बड़ी बड़ी लगी हुई है टेबल है।

उसके हेयर कट करने जा रहा है एप्रेन पहने हुए हैं।

चेयर पे बैठा हुआ है हाथ में उसके मोबाइल लिया है।

और पीछे वो उसका हेयर कट करने जा रहा है।

ये कोई सैलून है और ये बहुत बड़ा सा सैलून है जिसमें बाहर --

ब्राउन कलर का शो हो रहा है इसका।

ये कोई शॉप लग रही है।

जहाँ पे पीछे पीछे माा स्काई कलर का आसमान दिख रहा है।

ये गैरेज जैसा है और एक अ--

यहाँ पे ऑटो पार्ट का सामान मिलता है।

जहाँ काफी अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ है।

एक अअ लकड़ी लगी हुई है चारों तरफ़ और एक आदमी झुका हुआ है पीछे घर घर दिख रहे हैं।

और यहाँ पे कुछ बना रहे हैं ये लोग --

ब्लू ब्लू कलर का भी सामान का बॉक्स रखा हुआ है।

ये तो कोई रोड दिख रही है साइड साइड में पेड़ पौधे लगे हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और साइड साइड में पेड़ पौधे भी हैं।

किड जी ये एक बच्चों को पढ़ाने का एक --

यहाँ पर एक मंदिर जैसा बना हुआ है।

उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं और शिव जी की मूर्ति रखी हुई।

और लोग आ रहे हैं गाड़ियाँ आ रही है।

उसके साइड में भी गाड़ी है दो तीन गाड़ियाँ आ रही है।

और येलो येलो साइड में है बीच में ग्रीन है।

कई वैरायटी की कपड़े टंगे हुए हैं लेडीज है।

कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है लगता है वो अपने घर गया है खाना खाने --

ये कोई धार्मिक इस्थल लग रहा है लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं या कोई पार्टी है।

लोग पूजा कर रहे हैं और पूजा करके वो लोग अपने घर जाएँगे शाम को --

जिसमें दो तीन बच्चे भी दिख रहे हैं फोटो में --

एक गेट पे लग है और बाहर खड़ा हुआ है।

एक विंडो है साइड में और बहुत बड़ा सा हॉल है।

ये कोई प्लान वगैरह प्रेजेंटेशन के बारे में मीटिंग यहाँ पे चल रही है और लोग ध्यान से सुन रहे हैं मीटिंग को --

एक बोटल रखी हुई है टेबल टेबल चेयर लगे हुए हैं बहुत सारे --

हॉस्टल होगा जिसमें दो-दो करके एम बेड --

चार पाँच छ सात बेड लगे हुए हैं ऑरेंज कलर की दीवार है।

और अभी रात में लोग आकर यहाँ पर सोएंगे --

ये अ रोड है और रोड के बगल में एक पिंक कलर का घर है।

साइड में एक ग्रीनरी है।

इसमें तरह तरह के समान रखे हुए हैं बिस्किट वगैरह भी रखे हैं।

यहाँ पे लोग सामान लेना लेने के लिए आते हैं और लेकर चले जाते हैं अपने घर --

एक ऊपर बहोत बहुत बड़ी सी लाइट जली हु लगी है।

सामान लेने यहाँ पर आते हैं बच्चे हो चाहे बूढ़े हो सभी अपने रोजमर्रा का सामान यहीं से लेकर जाते हैं।

कुछ चिप्स वगैरह के पैकेट लटके हुए हैं।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं पीछे बहुत बड़ा सा पेड़ है।

और ग्रीन ग्रीन कलर का जमीन में कुछ बिछा हुआ है।

और पीछे बहुत सारे लोग हैं चेयर भी लगा हुआ है।

ये कोई पार्टी वगैरह यहाँ पर हो रही है।

और एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है जहाँ पे पिछ आगे छोटी सी चेयर है।

ओ लोग लगता है कोई पूजा या फंक्शन कर रही हैं।

रेड रेड कलर की साड़ियां पहनी हुई हैं सारी--

और चार लोग यहां पे खड़े हुए हैं बाहर बाईक भी है।

और दो गमले साइड में पास-पास में रखे हुए हैं पीछे छोटे-छोटे गमले दिख रहे हैं।

और एक चार पांच लोग खड़े हुए हैं एक आदमी बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है।

और कुछ प्रोग्राम चल रहा है और पीछे बैठकर लोग देख रहे हैं।

और इसमें कि पेड़ के नीचे साइड में बाउंड्री बनी हुई है और रेड कलर से--

है जिसमें बहुत बड़ा सा अलग-अलग--

और बहुत सारा तरह-तरह के सामान यहां पर बिकते हैं बहुत ज्यादा बिक्री होती है।

और हैंगर में लटके हुए हैं लोग यहां से कपड़े लेने आते हैं शॉपिंग करते हैं।

और सबसे ऊंचा वाला झूला है जिसमें बैठकर झूलने में डर लगती है।

यहां पर दो लेडीज बैठकर बात कर रही है।

और वो दीदीज शूज पहने हुए हैं।

ये कोई हॉल दिख रहा है जहां पे खंबे खंबे लगे हुए हैं।

साइड से ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे लगे हैं।

और बहुत बड़ा सा ये घर है बिल्डिंग है।

यह तो कोई नदी दिख रही है बीच में खंबा है और यह साइड में ब्रिज पुल बना हुआ है।

और उसके बगल-बगल में दुकान है पीछे कुछ आदमी लोग आ जा रहे हैं।